एक बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहा है। पूल बना हुआ है जैसा उसपे आदमी आ रहें हैं जा रहे हैं।